जहाँ पर फूल और मालाएं की बिक्री होती हैं।

आ ये जो शेहर है --

इस तस्वीर में मुझे ए --

स्टेज दिखाई दे रहा है। एक ऑडिटोरियम दिखाई दे रहा है। हॉल बहोत बड़ा --

इस तस्वीर में मुझे एक बोहोत सुन्दर-सा --